जैसे की मैं यहाँ पर देख पा रही हूं यहाँ पर ये मैदान है जो की यहाँ सफेद कलर का एक घर भी है।

जैसे की मैं यहाँ देख पा रही हूं यहाँ पर एक बड़ा सा घंटा घर है जो की यहाँ पर भूरे तथा पीले रंग का है और यहाँ पर पेड़ पौधे छोटे-छोटे--

जैसे की में यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर गंगा जी यहाँ पर एक नाव है पानी का रंग जो काही तथा सफेद है और यहाँ पर आसमान जो है वो सफेद है पुरा --

जैसे की मै यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर एक मुर्ग़ा है जो की यहाँ बैंगनी तथा अ नीला रंग का है इसकी चोंच लाल है।

जैसे की मैं यहाँ देख पा रही हूं यहाँ पर एक भूरे रंग की एक जमीन है रास्ता है तथा यहाँ पर एक लोडर खड़ा हुआ है जो की पीले रंग का है यहाँ पर जो--

यहाँ पर एक सफेद रंग की एक पन्नी पड़ी हुई हैं और यह ग्राउंड जो है।

यहाँ पर भोरे रंग से पेंट किया गया है बड़े बड़े पेड़ पौधे है इसमें--

और जो है वो पेड़ उगे हुए है आसमान नीला और सफ़ेद है इसमें --

जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर इ पॉट रखे है जोकि बोहोत सारे बैगनी नीले पीले हरे कलर के रखे हैं।

ये सफेद कलर की मेज के ऊपर रखे है। तथा यहाँ पे जो पीछे की दिवार है वो भूरी पीली और काहे रंग की है।

एक छपरा पड़ा हुआ है जोकि यहाँ पर घास का तथा यहाँ पर बाँस लगे हुए है इसमें आसमान सफेद है पूरा इसमें यहाँ --

तथा एक बॉक्स रखा हुआ है खाने डालने का प्लेट डालने का और काले रंग की यहाँ कुर्सियां रखे हुए है उसमे लाल रिबन लगे हुए है।

आसमान सफेद और नीला है और पुरा बादल हैं और यहाँ पर जो बाइक खड़ी हुई है वो काले रंग की है।

छत्रक मन म यहाँ पर एक छोटे-छोटे घर बने हे।

तथा यहाँ पर छोटी-छोटी घासे उगी हुई है।

तकी में यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर समुद्र जिसका रंग नीला है तथा छोटे-छोटे नाव खड़े हुए है।

और यहाँ पर भूरे रंग की यहाँ पर मिट्टी है और पीछे पेड़-पौधे लगे जो कि काई तथा हरे रंग के है।